वह हमीरपुर की बोहोत फेमस शॉप है जिसका नाम रामकिशोर एंड संस है। यह बोहोत पुरानी शॉप है।

यह हमने बाइक खड़ी करके फोटो खींची है। यह और सीढ़ियां बहुत ऊपर तक जा रही है।

जिसमें दो डॉक्टर एक डॉगी के का ऑपरेशन कर रहे हैं।

यह एक हाईवे का सीन दर्शाता है जिसकी साइड में बहुत सारे घर है।